ऊपर दीवाल दिख रहा है लाइट दिख रहा है छोटा मूर्ति दिख रहा है।

पानी दिख रहा है अगर ग बगल पेड़ पौधा दिख रा --

इस तस्वीर में घर दिख रहा है।

अगल बगल घर दिख रहा है खिड़की दिख रहा है।

नीचे जमीन दिख रहा है आदमी दिख रहा है बाइक --

दो-तीन लड़के हैं एक लड़की है चाय पी रहा है।

इस तस्वीर में दो गाड़ियां हैं।

पंखा दिख रहा है नीचे जमीन दिख रहा है।

ऊपर आसमान दिख रहा है घर के ऊपर प्लस का चिन्ह दिख रहा है।

वो ढेर सारे सामान्य जिम के दिख रहे हैं।

रेलिंग दिख रहा है बैलून दिख रहा है।

तस्वीर में घर बड़ा-बड़ा दिख रहा है।

सड़क दिख रहा है अगल-बगल पेड़ पौधा दिख रहा है।

छोटे-छोटे कैमरा दिख रहा है।

घर दिख रहा है घर में सामान दिख रहा है।

अगल-बगल पेड़-पौधा दिख रहा है।

ऊपर आसमान दिख रहा है नीचे जमीन दिख रहा है।

अगल-बगल जंगल दिख रहा है।

फेले पर सामान रखा हुआ दिख रहा है।

तस्वीर में एक पंप दिख रहा है नीचे तीन-चार गाड़ियां दिख रहा है दो-तीन आदमी दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

तीन चार बॉल आ दिख रहे हैं।

तस्वीर में छत दिख रहा है छत पर--

छड़ ढेर सारा बिछाया हुआ दिख रहा है लोहा का।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

अगल-बगल ढेर सारे लड़का बैठे हुए हैं।

नीचे उजला से फैदा दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

अगल-बगल खिड़की दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीचे जमीन।

अगल-बगल पेड़ दिखाई दे रहा है।

सरियाया हुआ सामान दिखाई दे रहा है।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

गेट दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का।

एक लड़की दिखाई दे रहा है एक छोटी बच्ची दिखाई दे रहा है।

नीचे जमीन दिखाई दे रहा है।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

शीशा दिखाई दे रहा है पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है।

खिड़की दिखाई दे रहा है पेड़ -पौधा दिखाई दे रहा है जमीन दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

सामान दिखाई दे रहा है जीम का सामान दिखाई दे रहा है।

पीला मकान दिखाई दे रहा है लाइट दिखाई दे रहा है।

गाड़ी दिखाई दे रहा है अगल-बगल पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है गमला दिखाई दे रहा है पौधा लगाया हुआ है।

बड़े बड़े घास दिखाई दे रहा है।

ऊपर असमान दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है जंगल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हरे भरे घास दिखाई दे रहा है।

प्रिंटर दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे रहा है फोटो दिखाई दे रहा है।

दो-तीन आदमी दिखाई दे रहा है सामने खिड़की दिखाई दे रहा है।

पंखा दिखाई दे रहा है मूर्ति दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है।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

नीचे टाइस दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रहा है अगल-बगल सामान दिखाई दे रहा है।

पोल दिखाई दे रहा है शीशा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।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

जमीन दिखाई दे रहा है गमला दिखाई दे रहा है।

अगल-बगल खिड़की दिखाई दे रहा है वाइट मकान दिखाई दे रहा है।

आदमी दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

अगल-बगल पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है ऊपर --

इस तस्वीर में बस दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है आदमी दिखाई दे रहा है झोला दिखाई दे रहा है।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

घर दिखाई दे रहा है गाड़ी दिखाई दे रहा है बाइक दिखाई दे रहा है चार चका दिखाई दे रहा है।